दो-तीन बैलून्स भी दिख रहे हैं यैलो और ब्लैक कलर के और ये अंकल हैं शर्ट पेर प्रेस कर रहे हैं और जो स्काई ब्लू कलर की एक टेबल है उस पर रख हुई शर्ट को पेर प्रेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल चीजे भी दिख रही हैं।